नीचे एक उसमें सेंट्री पैड़ वगैरह सारी चीजें रखी गई है।

और कुछ औरतें व्हाइट उसमें फ्रॉक में खड़ी हुई है।

यह कोई जू है जिसमें बहुत सारी चिड़िया तोता वगैरह सभी को रखा हुआ है यहां पर रंग बिरंगी बहुत ही सुंदर सुंदर चिड़िया है।

यहां पे बत्तख कुत्ता बिल्ली बोहोत और मंदिर भी सा म् ओ झोपड़ी सारी चीजें बनाई गई हुई है।

यहां पे किसी कंपटीशन में शायद हुआ है और फिर उसे ऐसी सजा कर रख दिया यहां पर दो बिल्लियों को भी बनाया हुआ है।

कोई गैराज लग रहा है गाड़ी ठीक वगैरा करने का। यहां पे एक गाड़ी को ठीक करा जा रहा है। यहां पे --

मैकेनिक अंदर काम कर रहे हैं और बाहर सारी चीजे पड़ी है।

यहां पे इस कस्टमर सर्विस प्वाइंट एस_बी_आई स्टेट बैंक वगैरा की सारी चीजें फोटो कॉपी वगैरा निकलती है।

यहां पे नीचे साइड में एक स्विच भी लगा हुआ है और नीचे बैलून भी पड़े हुए हैं।

प्राचीन मंदिर लग रहा है यहां पे बहोत सारे सुंदर एक ही तरह के गेट बने हुए हैं।

बहुत सारे आदमी यहां सर पे हेलमेट लगा के और मुंह पे मास्क बांध के कर रहे है।

पीछे आसमानी और पिंक कलर के पर्दे लगे हुए है और सा--

और यह ब्लू कलर की मशीन है किसी चीज की जो दिखाई नहीं दे रही और इसके सामने कमरा है।